यहाँ पर बहुत सारे इ-इस्लाम धर्म के लोग आते हैं कुछ नमाज़ पढ़ने के लिए और बहोत ही इस्लाम को गुरु भी आते हैं यहाँ पर।

यह ए यह एक एस.बी.आई. का बैंक है।

इसमें लेबर के द्वारा अनाज को ट्रक में लोड करके एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाया जाता है।

यह एक कार इस स्टैंड है। जहाँ पर कार आ कर खड़ी करती है।

यह सब्जी बंधा गोभी है ।